स्काइ ब्लू है इसका घर का कलर भी वैसा ही इसके बाहर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से देखने में ये नजारा कितना प्यारा लग रहा है गाइज मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है गाइज आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग देख --